पिंजरा के अंदर एक टाइगर है टाइगर भी बहुत बड़ा है।

इधर पे रोज़ बहोत सारे लोग आती है ये यूटेंसिल्स देखने के लिए।

इधर पे एक दुकान दिख रहा है | दुकान की रैक में पोटैटो है वाटरमैलन है पाइनएप्पल है कॉलीफ्लॉवर और बनाना भी है ।

फ्लोर में कुछ गाड़ी की चाका दिख रहा है | पास में भी कुछ प्राइवेट कार खड़ा है ।

इधर पे एक फील्ड है। फील्ड बहुत बड़ा है। फील्ड में कुछ गोल पोस्ट दिख रहा है। इधर पे बहुत सारे लोग खेलने आती है।

दूर में एक बड़ा सा फील्ड दिख रहा है फील्ड की चार पाँच बहुत सारे पेड़ हैं ।

इधर पे एक फिश का दुकान है। दुकान बहुत बड़ा है। दुकान में बहुत सारे फिश दिख रहा है। ये सब ताज़ा फिश है। दुकान में एक महिला दकानदार बैठी है।

इधर पे एक ड्रेस का मॉल है। मॉल की चार-पांच बहुत सारे लाइट्स से सजाया है। मॉल के अंदर बहुत सारा ड्रेस दिख रहा है। कुछ लोग भी है। मॉल के गेट के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड है।

एक फ्रिज में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जूस की बोतल दिख रहा है।